इस इमेज में हमे एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जिसपे एसबीआई लिखा हुआ है और नीचे बाटा लिखा हुआ है एस और एक ऑटो दिखाई दे रहा है जाता हुआ बाइक दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

इसपे अन का बोहोत बहु सारी लाइटिंग लगी हुई है और उस पर एक बुके रखा हुआ है फूलो का एक कप रखा हुआ है और वॉल पर एक ऐ_सी लगी हुई है।

यह किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेडी किया गया है।

इस इमेज में एक अ-अ शटर दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक डिसप्ले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है चौबीस हावरस ए_टी_एम एट_टी_एम दिखाई दे रहा है और लेकिन बंद है ये ए_टी_एम |